पेंट किया हुआ है रूम के बाहर बहुत सारे बोर्ड लग गए हैं जिसके ऊपर लिखा गया है।

यहां पर बोहोत सारे साउंड दिखाई दे रहे हैं जो काले रंग के हैं।

और यहां पर लाल और सफेद रंग के बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं दुकान के ऊपर भी नीले रंग का बोर्ड लगाया गया है।

यहाँ पर एक दुकान है दुकान के दीवारो का रंग नीला और सफ़ेद पट्टियां है।

यहां पर चॉकलेटी सफेद रंग का एक टेबल भी है। जिसके ऊपर बहोत सारा सामान रखा गया है।

जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है बाजू में नीले रंग का शर्ट पहन कर--

यहां पर एक मंदिर है मंदिर का ऊपर बहुत सारे फूल लगाए गए है।

यहाँ पर एक हरे रंग का बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और नीचे--

और यहां पर पीले रंग का घर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक दुकान है दुकान के दीवारों का रंग सफेद है।

पर्पल है यहां पर एक चॉकलेटी रंग का टेबल भी है टेबल का रंग चॉकलेटी है।

यहां पर एक दुकान है दुकान के ऊपर नीले रंग का बोर्ड है जिसके ऊपर--

और यहां पर नीले रंग का दीवार भी दिखाई दे रहा है।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

यहां एक होटल है। होटल के अंदर बहुत सारे सफेद रंग के टेबल और कुर्सियां रखी हुई है।

यहां पर एक रूम है रूम के दीवारों का रंग सफेद है।

और पीछे बहोत सारे घर दिखाई दे रहे हैं यहां के दीवारों का रंग सफेद है।